देखिए इस गार्डन मे एक लड़का खड़ा है दो आदमी बैठे हुए हैं।

गार्डन मे सुबकंडी झूले वगैरा दिख रहे हैं लाइट के खंबे वगैरा भी हैं।

एक आदमी इनके सामने खड़ा है फैन वगैरा छत पर लगे हुए हैं।

पाँच छे लड़के इधर उधर खड़े हैं लै प्रा वगैरा जल रही--

देखिए ये सब्जी की दुकान है एक आदमी यहाँ पर खड़ा है सब्जियों में--

बिजाला पाला ककोतमी टमाटा गोभी करमकल्ला वगैरा सब चीज है।

देखिए इस कमरे मे पलंग पे दो तकिया रखी हुआ है गादा बिछा हुआ है ओढ़ने वाला दूसरा भी रखा हुआ है।

देखिए इस स्टेज पर पाँच औरतें--

कपड़े लगे हुए है पचास पर्सेंट की छूट दी हुई है कपड़े मे और दो तीन मंजिला ऊपर बिल्डिंग है।

देखिए यहाँ पर अंदर जाने का--

देखिए यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कराटा सीख रहे है सभी ब--

देखिए यहाँ पर बहुत सारी कार वगैरा खड़ी है।

दुकान के बाहर एक हीरो होंडा खड़ी है दुकान मे पेन पेन्सिल ब्याज और भी कुछ चीजे दिख रही--

दिख रही है मैदान मे छोटी-छोटी घास उगी हुई है किनारे बहुत सारे पेड़ पौधे दिख रहे है।

देखिए यहाँ पर बहुत सारे आदमी और औरत योगा कर रहे है।

अ वे हवेली के सामने छोटी-छोटी घास वगैरा उगी हुई है हवेली बहुत ही पुरानी है।

एक साइड में एक आदमी कुर्सी पर बैठा है दो सोफे पर बैठे है सामने मूर्ति भी रखी हुई है।

देखिए एक आदमी चेयर पर बैठा हुआ है इसके सामने टेबल पर बहुत सारे बिसकुडल--

देखिए एक औरत खड़ी है बहुत सारी छोटी-छोटी बच्ची--

सारे बच्चे आदमी दिख रहे हैं पेड़ पर लाइट वगैरा लगा हुआ हैं।

देखिए यहाँ पर दो तीन मंजिला बिल्डिंग बनी हुई है।

सारी चीजे टंगी हुई है ऊँची-ऊँची बिल्डिंगे नजर आ रही है।

देखिए यहाँ पर दो-तीन औरत बैठे हुई है और कुछ गट्ठी जैसा रखा हुआ है लाइट वगैरा जल रही है कूलर भी रखा हुआ है।

देखिए इस नदी मे बहुत सारी औरते खड़ी है।

देखिए यह बड़ा सा घर बना हुआ है इस पर लाल-लाल--